इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मांस मछली वगैरह भी कुछ रखे होंगे इन कार्टूनों में।

अगल बगल कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो की बाउंड्री के अंदर है और यहाँ पे एक बड़ी सी फोर व्हीलर खड़ी हुई जो की सफ़ेद कलर से पेंट है इसके बगल से एक--

और उसी पेट्रोल के उनके पास में मुझे एक अ लोहे का पाइप उसके--

ऊपर दिखाई दे रहा है यहां पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है जो कि छोटी-छोटी है।

अ हे और टेबल पे हाथ रखे हुए हैं कुछ दिवालों पर फ्रेम लगे हुए हैं बहोत अच्छी तरह से पेंटिंग की हुई--

जिस पर मोटरसाइकिल पर सज्जन कुछ बैठे हुए हैं और एक--

अपनी मम्मी से कुछ कहते हुए यानी बात करते हुए नजर आ रही है।

और वहां पे एक बाउंड्री है दूर की साइड में जहां पे कुछ प्रिंट किया हुआ है कुछ पेड़-पौधों का और एकदम गंदगी सी--

यहां मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे वाहन खड़े हो गए हैं कुछ--

एक लाल कलर की पजामी भी पहन के रखी हुई है वो बच्ची एक--

थो थोड़ा-थोड़ा घास भी नजर आ रही है और दूर को मुझे--

उम्म व्हाइट कलर का मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि दीवाल पे फ्रेम मे फिट है।

वहां पे बगल से वहां पे बहोत सारे उम्म बलून अगल-बगल लगा के रखे हुए कुछ सफेद कलर से कुछ हरे कलर से।

एक लड़का और एक आदमी बैठा हुआ है दो कुर्सियों पर--

ए_टी_एम वगैरा होश में हों और यहां पे एक लाइट का खंभा दिखाई दे रहा है वहां पे लाइट के तार--

ऐं किसी ने सभी को कपड़े पहना के रखा हुआ है किसी को लहंगा किसी को साड़ी किसी को--

यहाँ मुझे दो माता रानी की मूर्तियाँ नजर आ रही हैं झाँकी जोकि बोलते हैं उन मूर्तियों को बहोत अच्छे तरीके से सजाया गया हुआ ऎॆॆेे और --

ऐंय फूलों की माला उनके गले में डाल के रखी हुई है गेंदे की फूल की और यहाँ पे एक औरत उस फो माह अ माता रानी की --

ये घासी घास ब्ब बहुत सारी घास दिखाई दे रही है और --

ऐंय सभी पूरा टेबल पर जमा हुआ है मतलब काफी अच्छा जम जो हाथ में लेके मतलब उसे अपना बॉडी बनाते हैं और एक बॉडी का --

यहाँ पर शड़क में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है इसका मेन दरवाजा खुला हुआ है और एक बड़ा सा पेड़ दिखा --

रखे हुए हैं फेसलपट्टी टाइप के और थोड़ा थोड़ा वहाँ पे घास में लगा हुआ है।